हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है।

की कपड़े दिखाई दे रही हैं।

लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर भी और सामने भी पेंटिंग --

देखने में ये मंदिर बहुत ही बड़ा लगा रहा है।

और हमें यहां पर इस पार्क पर दो बैंच भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और आस पास हमें और भी व्हीकल दिखाई दे रहे हैं।

बना खाने के लिए बना रहे है।

और ये तीन लोग हमें योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और दीवारों पर येलो कलर का पेंट दिखाई दे रहा है।